एक बड़ी- सी बिल्डिंग नज़र आ रही है उस बिल्डिंग के नीचे ब्लू कलर की कार रखी हुई हैं।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

जो की बहुत सुंदर अमेजिंग जिसका कलर कुछ आधा सफेद सा है आधा ब्लैक सा कुछ ए काले कलर की बनी हुई हैं।

इस इमेज मे मुझे बहुत ही सुंदर अमैज़िंग एक बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा एक गेट लगा हुआ है जो कि ब्लैक कलर का है एक गाड़ी भी रखी है।

बड़ा सा मोटा सा आदमी भी दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही अमेज़िंग लग रहा है बड़िया टाइप कि नजर आ रहा है।